कुछ पाइपे और वॉल जुड़ी हुई है।

यह चाट की एक दुकान है।

एक बरा भगोना चने से भरा है।

बालकनी में बर्तन रखे हुए हैं।

पीछे दरवाजा और खिड़की है।

आसपास बहुत सारे औजार बिखरे हुए हैं।

यह जगह बहुत सुंदर लग रही है।

कुछ मछलियां काटी हुई भी है।